मैच चल रहा है एक बैटिंग कर रहा है तो दूसरा कैच पकड़ रहा है।

एक पुल है पुल के नीचे कुछ लोग खड़े हुए है।

सब मास्क लगाए हुए है और जो मास्क लगाए है उनको कपड़े का कलर ग्रीन में है ओर एक साइड में खड़े है वो पिंक एंड ब्लैक में है।